शीशे पे एक डिजाइन बना हुआ है आदमी के बाल काटने का।

दीवाल है यहां पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है घंटों का सफर मिनटों में।

पत्थर से साइड में भी गेट लगा हुआ साइड में भी पत्थर की मूर्ति बना के रखा हुआ है।

जहां पे नीचे में कुशन बिछाए हुआ हैं और बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ एक आदमी का जो--

और इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो रखी हुई है लाइट लगा हुआ है फोटो लगी हुई गणेश भगवान की--

एक मशीन है इलेक्ट्रॉनिक अब उसके बाइक को चेक कर रहा है मास्क लगाए हुए लाइट --

उसके दूर दूर में हर दूर दूर पहाड़ियों पे घर बने हुए हैं।

ये दुकान जिसका नाम लिखा हुआ है लोगो बना हुआ है।

मिलिट्री का हॉस्पिटल बना हुआ है और बहुत सारी --

रेड भाम्ब के ऊपर सजाया गया है और बहोत सारे --

स्टोर है मेडिकल स्टोर है जहां पे बड़ा दवा खाना बना हुआ है।

लैपटॉप रखा हुआ है कुर्सी लगी हुई है और बहुत सारी में--

हरे भरे लम्बे पड़े पोधै हे क्योंकि बहोत से लोग हैं जो--

रोड घुमावदार बने हुए हैं बहुत सारी पहाड़ियां हैं।

बादल में जो पहाड़ों को छू रही है बहोत सारे पहाड़ की बनी हुई है।

यहाँ पे एक लड़की डांस कर रही है बहुत सारी माइक लगी हुई है बॉक्सेस रखे हुए--

की में जैसे बहोत से लोग बैठे हुए हैं और वो सब देख रहे--

मूर्ती बनी हुई बहोत सारी अलग अलग तरीके कि--

कुर्सी लगी हुई है और एक क्यू_आर कोड रखा हुआ है।

बहोत अच्छा सा व्यू बड़ा सा इमारत बना हुआ है चार तल्ला का--

जहाँ पे बहुत सारे खाने पीने के सामान है काजल टंगी हुई है दियो टंगा हुआ है।

एक लेडीज भाषण दे रही है और बहुत सारे पिक्चर लगी हुई हैं चर्च की --

और योगा कर रहे हैं और इनमें बहुत सारी लेडीज हैं और आगे एक लेडीज बैठी है जिसमें जिसने चश्मा लगा के रखा हुआ है और ये सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और --

और एक बड़ा सा सामान रखी हुई है बहोत सारा मसाज के समान है पंखे लगी हुई हैं लाइटें लगी हुई हैं डिब्बों में क्रीम बहोत सारी रखी हुई है।

ये एक रोड है जहां पे बड़ा सा सिल ब्लॉक का गेट लगा हुआ है शिमला लिखा हुआ बीच में दोनो तरफ हाथ का ची निशान बना हुआ है।

बसे जा रही हैं। यहां बहोत सारी गाड़ियां आना जाना कर रही हैं।

जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी सीन बना हुआ है पॉइंट व्यू बना हुआ है यहां से बहुत अच्छे अच्छे नजारे दिख रहे हैं।

घर में दो आदमी खड़े हो के फोटो खींचा रहे कारपेट पीछे--

गाड़ी आने जाने के लिए गाड़ी जिस पे सामान लोड किया जा रहा है नीचे बहुत सारी स्कूटी बाइक खड़ी हुई हैं।

यहां रेस्टोरेंट बना हुआ है जहां पे नीचे में बहोत सारी है।

विटामिन्स के डिब्बे हैं क्रीम का --

एक पार्लर है जहाँ पे बहुत सारे--

यह बड़ा सा फूल का बगीचा बना हुआ है जहाँ पे अलग-अलग से गबले में अलग अलग तरह के फूल लगी हुई है।

रखा हुआ है बड़ा सा टेबल रखा हुआ सोफा बना हुआ है।